पेड़ पे लाल और सफेद रंग का पेंट किया हुआ है और आसमान से सब जगह से धूप आ रहा है।

कैंट के अंदर कई सारे सामान रखे हुए हैं और उसे बाहर से शीशे से कवर किया हुआ है।

इस दृश्य में कई सारे बच्चे लोग हैं।

पीछे कई सारे पेड़ भी है और घर भी है कई सारे और आसमान पूरा सफेद है।

मिट्टी पर कई सारे कंकड़ पड़े हुए हैं।

कमरे के जस्ट बगल में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड भी है।

इस दृश्य में कई सारे पावरफुल बाइक रखे हुए हैं और लगभग सभी बाइक का रंग सफेद है और सभी के टायर काले हैं।

झूले का रंग ब्लू ग्रीन और यलो है।

और रूम्स में अलग अलग दुकान है और दुकान के बाहर दो बाइक भी खड़ा है।

रूम के बाहर भी कई तरह के सामान रखे हुए हैं।

पेड़ पे लाल रंग का फूल है और उसके पत्ते हरे हैं।

इस दृश्य में एक आदमी बैठा हुआ है जो सफेद रंग का हाफ टीशर्ट और ग्रे रंग का पेंट पहना है सर पर टोपी भी पहना है और पीछे बहोत ही बड़ा सा पुल है।